और उसके नीचे छोटी छोटी झाड़ियां जैसी दिख रही है।

यहां एक मंदिर जैसा कुछ है।

मस्जिद में लाइट लगी है सारी।

बीचों बीच में पंख लगा हुआ है पंखे के बगल में ए_सी लगी है डक वाली।

ये के एक रेस्टोरेंट है बीच में टेबल्स पे एक पौधा रखा हुआ है।

इसके उपर कुछ सामान रखा हुआ है।

ये दिख रही है और भगवान की फोटो वगैरा दिख रही है।

और राइट साइड में गाड़ी के बगल में पेड़ लगा--

लेफ्ट साइड में रखे है दो हाईलोजन राइट साइड में रखे है।

उसके बगल में एक काउंटर रखा हुआ है काउंटर के पीछे--

यहां पर सिएट टायर का बोर्ड लगा हुआ है बाहर--

राइट साइड में तीन चार बड़े बड़े खंभे दिख--

एक नदी दिख रही है सामने।

और उसके बगल में जंगल जैसा पेड़ लाइन से दिख रहा है।

नीचे येलो कलर की पट्टी दिख रही हैं।

इनमें रोड दिख रही है दो बाइक्स खड़ी है एक साथ।

उसके बगल में डंबल्स वगैरा नीचे रखें हैं।

और एक लेफ्ट साइड में एक इमारत दिख रही है बहुत--